आस पास बहोत ही ज्यादा हरियाली भी हैं।

इस दुकान के बाहर बहोत ही ज्यादा धूप है।

मंदिर लाल रंग का है उसके पीछे बहोत ही ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे--

यह तस्वीर हमें एक स्कूल की क्लासरूम की--

इसमें बच्चों ने अपनी ड्रेस भी पहनी हुई है जोकि लाल रंग की है।

घर के आसपास बहोत ही ज्यादा लोगों की भीड़ है।

अच्छा है और एक इस दृश्य में हमें लोगों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही।

यह दृश्य हमें किसी अ ये दृश्य हमें किसी--

यह दृश्य हमें किसी खाली जगह का दिखाई दे रहा है।

इसके आसपास बहोत ही ज्यादा धूप है और मैदान में हमें कुछ पशु भी दिखाई दे रही हैं।

एक लड़का किताब खरीद रहा है और--

यहां दरअसल में एक लाइट है जिस पर बुक्स रखी गईं हैं।

इस पर दीवारों का कलर सफेद हमें दिखाई दे रहा--

जिसमें एक बहोत ही पुराना झूला रखा हुआ है।

यहां एक खाली जगह पर हमें दिखाई दे रही है।

आस पास बहोत ही ज्यादा हरियाली भी है और नीचे घास भी दिखाई दे रही है।